एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ से कुर्सियां लगी हुई है।

पीछे हरे हरे पेड़ भी हैं।

चारों तरफ से कुर्सियां लगी हुई है।

छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं।

रंग बिरंगे लाइट जल रही है।

एयरपोर्ट पे तीन एरोप्लेन लैंड किए हैं।

सुनार की दुकान में एक काउंटर है।

एक पेटीएम का स्कैनर लगा हुआ है।

बगल में एक तालाब दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नदी के पानी बहाव के कारण रोड टूट गया है।

बहोत सारे गाड़ी लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े टायर रखे हुए हैं।

काउंटर के ऊपर कुछ सामान रखी हुई हैं।

दरवाज़े भी है उपर एक पानी का टंकी--

बहोत सारी मूर्तियां भी रखी हुई है।

रोड के कोने पे कुछ लोग बाइक लगाकर खड़े हैं।